रस् तस्वीर मे एक मूर्ति बनी हुई है।

तस्वीर मे फसल नजर आ रही है हरी भरी और पीछे भी बहुत हरियाली नजर आ रही है। पेड़ नजर आ रहे है आसमान नजर आ रहा--

तस्वीर मे लोग को संगीत के यंत्र लिए हुए खड़े है बजा रहे है।